बहुत सारे लड़के नजर आ रही है एक लड़की नजर आ रही है नजर आ रहा है कुत्ते नजर आ रहे हैं।

यहां पर मुझे हॉल नजर आ रहा है हॉल के सामने एक ब्लू वाइट कलर के से सजाया गया गेट नजर आ रहा है एक मीटर नजर आ रहा है जिसमें--

यहाँ मुझे एक दुकान नजर आ रहा है दुकान के सामने बहुत बड़ा बोर्ड नजर आ रहा है जिसमें महालक्ष्मी स्वर्ण आभूषण--

यहां पे मुझे दुकान दिखाई दे रहा हैं जो येलो और व्हाइट कलर का है दुकान के ऊपर त्रिशूल नजर आ रहा है।

कही पे तार नजर आ रहे है कला एक आदमी नजर आ रहा है और बाल्टी नजर आ रहा है नीचे घास नजर आ रहा है।

यहाँ पे मुझे एक सड़क नजर आ रही है सड़क के किनारे गाड़ियाँ नजर आ रही हैं बाइक नजर आ रहा है स्कूटी नजर आ रही है एक ऑटो नजर आ रहा है।

सामने मैं एक दुकान नजर आ रहा है जिसमें दाँत का अस्पताल लिखा हुआ है काँच का गेट नजर आ रहा है आदमी न--

पीने के लिए पानी रखा हुआ है इस दुकान के अंदर बहुत सारे सामान रखे हुए हैं बॉक्स रखे हुए हैं।

कुछ रस्सी पकड़ के टांग रहे है बड़े बड़े लाइटें नजर रही है बहुत सारे बिल्डिंग दिखाइ दे रहे आसमान नज़र आ रहा--

पेड़ नजर आ रहे हैं एक कार नजर आ रहा है टीन का यह लिस्ट नजर आ रहा लाइट न--

यहाँ पर मुझे ओनली सड़क नजर आ रहा है सड़क के किनारे एक आदमी चलता हुआ नज़र आ रहा है।

एक बाइक लगा हुआ नजर आ रहा है जिसमें एक आदमी बैठा हुआ है सामने में मुझे एक दुकान नजर आ रहा है दुकान के अंदर बहुत सारे सामान नजर आ रहा है।

यहाँ पर मुझे एक रूम दिखाई दे रहा है रूम में बहुत सारे फोन नज़र आ रहे है इसके ऊपर गद्दे लगे हुए है तकियाँ लगे हुए है।

एक गेट नजर आ रहा है स्विच बोर्ड नजर आ रहा है एक सरस्वती माँ का फोटो नजर आ रहा है।

यहां पे मुझे एक मंदिर दिखाई दे रहा है जो बहुत बड़ा है मंदिल में बहुत सारी सीढ़ियां नजर आ रही है बहुत सारी घर नजर आ रहे हैं बहुत सारी खिरकियां नजर आ रही है।

यहाँ पर मुझे एक सामने ग्राउंड नजर आ रहा है यहाँ बहुत सारे पत्थर रखे हुए हैं कुट्टियाँ नजर आ रहा है भालू नजर आ रहा है बलचा अच्छा नजर आ रहा --

यहां पर मुझे एक दुकान दिखाई दे रहा है इसमें बहोत सारे सामाने रखी हुई है कांच के थाली प्लेट नजर आ रहे है कछुआ नजर आ--

यहां पे मुझे सामने में एक दुकान नजर आ रहा है दुकान में बहोत सारी टेबल नजर आ रहा है जिसके ऊपर कांच लगे हुए हैं ब्लैक कलर का चेयर नजर आ रहा है।